इसमें वाइट कलर से पेंट किया गया है बिल्डिंग को देखकर यह लग रहा है कि यह नवनिर्वाचित बिल्डिंग है।

जिस बोर्ड पर यादव ट्रेडर्स लिखा है वो ब्लू कलर का बोर्ड है साइड में एक ए_सी भी लगा हुआ है।

चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो की नये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं।

कुछ पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं जो कि ग्रीन कलर की दिख रही है।

कुछ बच्चे न्योन कलर का हेलमेट लगाए हैं पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है।

वह स्कूल की बिल्डिंग है जिसका कलर यलो कलर से किया गया है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वह एक जंगल का दृश्य है जिसमें सामने दो ब्लैक कलर के बड़े बड़े विशाल काय हाथी दिखाई दे रहे हैं।

सामने की साइड में एक टेबल पर दो लेडिस और एक छोटी बच्ची बैठी हुई है।

जंगल में चारो तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे है जो कि ग्रीन कलर के है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वह एक टीनसेड है टीनसेड के नीचे बहुत सारी पेंटिंग्स की बाल्टियां रखी हुई है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वह एक होटल या रेस्टोरेंट का फोटो है।

अल्ट्राटेक को हिंदी में ब्लैक कलर से लिखा गया है दुकान का कलर येलो कलर से किया गया है।

इस इमेज में सामने एक नेचुरल दृश्य दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में बाढ़ आई गई है।

साले के सामने एक पपीता का पेड़ खड़ा हुआ है इसमें तीन से चार पपीता लगे हुए हैं जो की बिल्कुल कच्चे हैं जो की हरे कलर के दिख रहे हैं।

वीडियो ग्राफी फोटोग्राफी को येलो कलर से लिखा गया है आर के को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में येलो कलर से लिखा गया है।

इस इमेज में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह एक कपड़ों की दुकान है।

जिसमें ऊपर टीन शेड डाला गया है जो की लोहे का वाइट कलर का टीन शेड है। टीन शेड पर एक पंखा भी लटका हुआ है।

पीछे एक फर्श पर एक तख्त पड़ा हुआ है। तख्त लकड़ी का ग्रीन कलर का है।

जो की सोखता के ब्लैक कलर के सोफे हैं ऊपर सीलिंग में बहुत सारी कलरफुल लाइट्स लगाई गई हैं।